मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है
और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है
मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी
क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था
और चार दशक बाद क़रीबक़रीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने बेटे और बेटियों ने हॉकी के अन्दर फिर से एक बार जान भर दी
और कितने ही पदक क्यों न मिल जाएं लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला चार दशक के बाद मिला
आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर उनकी आत्मा पर वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में हमारे बेटेबेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है
मातापिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है ये जो ललक दिख रही है न मैं समझता हूँ यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है
साथियो जब खेलकूद की बात होती है न तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है
और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है
युवा का मन बदल चुका है
और आज का युवा मन घिसेपिटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है हटकर के करना चाहता है
आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है
वो नए रास्ते बनाना चाहता है
अंकनाउन जगह पर कदम रखना चाहता है
मंजिल भी नयी लक्ष्य भी नए राह भी नयी और चाह भी नयी अरे एक बार मन में ठान लेता हैं न युवा जीजान से जुट जाता है
दिनरात मेहनत कर रहा है
हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़चढ़ करके आगे आए हैं और मुझे पक्का भरोसा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सैटेलाइट्स की होगी जो हमारे युवाओं ने हमारे छात्रों ने हमारे कॉलेज ने हमारी यूनिवर्सिटीज ने लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने काम किया होगा
इसी तरह आज जहां भी देखो किसी भी परिवार में जाओ कितना ही संपन्न परिवार हो पढ़ेलिखे परिवार हो लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है वो अपने पारिवारिक जो परम्पराओं से हटकर के कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा स्टार्टअप्स में चला जाऊँगा
यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है
आज छोटेछोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूँ
अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी
देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में ये विषय आया उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने
और नएनए प्रयोग कर रहे हैं और दुनिया में खिलौनों का बहुत बड़ा मार्केट है 67 लाख करोड़ का मार्केट है
आज भारत का हिस्सा बहुत कम है
लेकिन खिलौने कैसे बनाना खिलौने की विविधता क्या हो खिलौनों में टेक्नोलॉजी क्या हो चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुरूप खिलौने कैसे हो
आज हमारे देश का युवा उसकी ओर ध्यान केन्द्रित कर रहा है कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है
साथियो एक और बात जो मन को खुशियों से भर भी देती है और विश्वास को और मजबूत भी करती है
और वो क्या है कभी आपने मार्क किया है
आमतौर पर हमारे यहाँ स्वभाव बन चुका था होती है चलो यार चलता है लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आपको केन्द्रित कर रहा है
सर्वोत्तम करना चाहता है सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है
ये भी राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा
साथियो इस बार ओलम्पिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है
ओलम्पिक के खेल पूरे हुए अभी पैरालम्पिक्स चल रहा है
देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ
आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा ऐसा नहीं है लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी ओर देख रहा है
उसके पूरे ईसीओ सिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है उसके सामर्थ्य को समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है
अब वो कन्वेंशनल चीज़ों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन्स को अपना रहा है
और मेरे देशवासियो जब इतना मोमेंटम आया है हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है
आप ही बताइये मुझे क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिये रुकने देना चाहिये
आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे
अब देश में खेल खेलकूद स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है
इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में सामाजिक जीवन में राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है ऊर्जा से भर देना है निरन्तर नयी ऊर्जा से भरना है
घर हो बाहर हो गाँव हो शहर हो हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिये सब खेलेंसब खिलें और आपको याद है न मैंने लाल किले से कहा था सबका प्रयास जी हाँ सबका प्रयास
सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है
मेजर ध्यानचन्द जी जैसे लोगों ने जो राह बतायी है उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है
वर्षों बाद देश में ऐसा कालखंड आया है कि खेलों के प्रति परिवार हो समाज हो राज्य हो राष्ट्र हो एक मन से सब लोग जुड़ रहे हैं
मेरे प्यारे नौजवानों हमें इस अवसर का फायदा उठाते हुए अलगअलग प्रकार के स्पोर्ट्स में महारत भी हासिल करनी चाहिए
गाँवगाँव खेलों की स्पर्धाएँ निरंतर चलती रहनी चाहिये
स्पर्धा में से ही खेल विस्तार होता है खेल विकास होता है खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं
आईये हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं जितना योगदान हम दे सकते हैं सबका प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है
जन्माष्टमी का ये पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व
हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं नटखट कन्हैया से ले करके विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक शास्त्र सामर्थ्य से ले करके शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक
कला हो सौन्दर्य हो माधुर्य हो कहाँकहाँ कृष्ण है
लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व मैं एक ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूँ तो मेरा मन करता है ये बातें मैं आपसे करूँ
आपको याद होगा इस महीने की 20 तारीख को भगवान सोमनाथ मंदिर से जुड़े निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है
सोमनाथ मंदिर से 34 किलोमीटर दूरी पर ही भालका तीर्थ है ये भालका तीर्थ वो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपने अंतिम पल बिताये थे
एक प्रकार से इस लोक की उनकी लीलाओं का वहाँ समापन हुआ था
सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा उस सारे क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम चल रहे हैं
मैं भालका तीर्थ और वहाँ हो रहे कार्यों के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नज़र एक सुन्दर सी आर्टबुक पर पड़ी
यह किताब मेरे आवास के बाहर कोई मेरे लिए छोड़कर गया था
इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप अनेकों भव्य तस्वीरें थी
बड़ी मोहक तस्वीरें थी और बड़ी मीनिंगफुल तस्वीरें थी
मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया तो मेरी जिज्ञासा जरा और बढ़ गई
जब मैंने इस किताब और उन सारे चित्रों को देखा और उस पर मेरे लिए एक सन्देश लिखा और तो जो वो पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि उनसे मैं मिलूँ
जो ये किताब मेरे घर के बाहर छोड़ के चले गए है मुझे उनको मिलना चाहिए
तो मेरी ऑफिस ने उनके साथ संपर्क किया
दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया और मेरी जिज्ञासा इतनी थी आर्टबुक को देख कर के श्री कृष्ण के अलगअलग रूपों को देख करके
इसी जिज्ञासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से
वे अमेरिकन है जन्म अमेरिका में हुआ लालनपालन अमेरिका में हुआ जदुरानी दासी जी इस्कोन से जुड़ी हैं हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है भक्ति आर्ट्स में वो निपुण है
आप जानते हैं अभी दो दिन बाद ही एक सितम्बर को इस्कोन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद स्वामी जी की 125वीं जयंती है
जदुरानी दासी जी इसी सिलसिले में भारत आई थीं
मेरे सामने बड़ा सवाल ये था कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ जो भारतीय भावों से इतना दूर रहीं वो आखिर कैसे भगवान श्रीकृष्ण के इतने मोहक चित्र बना लेती हैं
मेरी उनसे लंबी बात हुई थी लेकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ
जादुरानी जी हरे कृष्णा
आई हेव रीड आ लिटल अबाउट भक्ति आर्ट बट टेल और लिस्टेनर्स मोरे अबाउट इत
यूर पैशन एंड इंटरेस्ट टॉवर्ड्स इत इस ग्रेट
सो भक्ति आर्ट वे हेव ओने आर्टिकल इन थे भक्ति आर्ट इल्यूमिनेशंस व्हिच एक्सप्लेन्स होव थिस आर्ट इस नोट कमिंग फ्रॉम थे माइंड ओर इमेजिनेशन बट इत इस फ्रॉम थे एंसिएंट वेदिक स्क्रिप्चर्स लाइक भ्रम संहिता
वें ओंकाराय पतितं स्क्लितं सिकंद फ्रॉम थे goswamiएस ओएफ वृंदावन फ्रॉम थे लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह होव हे कैरीज थे फ्लूट होव अल्ल ओएफ हिस सेंसेस कैन एसीटी फोर एनी ओथर सेंसे एंड श्रीमद भागवतम टीसीआर 909 बर्हापींड नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं एवरीथिंग हे वियर्स आ कर्णिका फ्लावर ओन हिस ईएआर हे मेक्स थे इम्प्रेशन ओएफ हिस लोटस फीट अल्ल ओवर थे लैंड ओएफ वृंदावन थे कोव हर्ड्स वॉइसिंग ओएफ हिस ग्लोरीज हिस फ्लूट एट्रैक्ट्स थे हर्ट्स एंड माइंड्स ओएफ अल्ल फॉर्च्यूनेट बेइंग्स
सो एवरीथिंग इस फ्रॉम एंसिएंट वेदिक स्क्रिप्चर्स एंड थे पॉवर ओएफ ठेसे स्क्रिप्चर्स व्हिच एआरई कमिंग फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटीज एंड थे पुरे डिवोटीज व्हो एआरई ब्रिंगिंग इत थे आर्ट हस थीर पॉवर एंड थाटएस व्हाई आईटीएस ट्रांसफॉर्मेशनल इत इस नोट माय पॉवर एटी अल्ल
जादुरानी जी आई हेव डिफरेंट टाइप ओएफ क्वेस्शन फोर यू
सिंस 1966 इन आ वे एंड फ्रॉम 1976 फिजिकली यू हेव बीन एसोसिएटेड विथ इंडिया फोर लोंग विल यू प्लीज टेल मे व्हाट डोएस इंडिया मीन टो यू

थांक यू जादुरानी जी
हरे कृष्णा
साथियो दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परम्पराओं को आगे लेकर जाएँ
जो कालबाह्यी है उसे छोड़ना ही है लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है
हम अपने पर्व मनाएँ उसकी वैज्ञानिकता को समझे उसके पीछे के अर्थ को समझे
इतना ही नहीं हर पर्व में कोई न कोई सन्देश है कोईनकोई संस्कार है
हमें इसे जानना भी है जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है
मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुतबहुत शुभकामनाएँ देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो इस कोरोना कालखंड में स्वच्छता के विषय में मुझे जितनी बातें करनी चाहिए थी लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी
मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना है
राष्ट्र निर्माण के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है इसके उदाहरण हमें प्रेरणा भी देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं नया विश्वास भर देते हैं हमारे संकल्प में जान फूँक देते हैं
हम ये भलीभांति जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनन्दन के अधिकारी भी है
हमारा ये इंदौर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नम्बर पर बना हुआ है
अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोष पा कर के बैठना नहीं चाहते हैं वे आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं
और उन्होंने क्या मन में ठान ली है उन्होंने वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए है
वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहाँ बिना ट्रीटमेंट के कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्त्रोत में नहीं डाला जाता
यहाँ के नागरिकों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है
स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस वजह से सरस्वती और कान्ह नदियों में गिरने वाला गन्दा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नज़र आ रहा है
आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है
हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी हमारी नदियाँ भी साफ होंगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे
साथियो मेरे सामने एक उदाहरण बिहार के मधुबनी से आया है
मधुबनी में डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहाँ के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है
इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है
विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल सुखेत मॉडल का मकसद है गाँवों में प्रदूषण को कम करना
इस मॉडल के तहत गाँव के किसानों से गोबर और खेतोंघरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गाँव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिये जाते हैं
जो कचरा गाँव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है
यानी सुखेत मॉडल के चार लाभ तो सीधेसीधे नजर आते हैं
एक तो गाँव को प्रदूषण से मुक्ति दूसरा गाँव को गन्दगी से मुक्ति तीसरा गाँव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गाँव के किसानों को जैविक खाद
आप सोचिए इस तरह के प्रयास हमारे गाँवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं
यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है
मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहाँ जरुर सोचें
और साथियो जब हम एक लक्ष्य लेकर निकल पड़ते हैं न तो नतीजों का मिलना निश्चित होता है
अब देखिये न हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की कान्जीरंगाल पंचायत
देखिये इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया यहाँ पर आपको वेस्ट से वेल्थ का एक और मॉडल देखने को मिलेगा
यहाँ ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गाँव में लगा दिया है
पूरे गाँव से कचरा इकट्ठा होता है उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट्स को कीटनाशक के रूप में बेच भी दिया जाता है
गाँव के इस पॉवर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन दो टन कचरे के निस्तारण की है
इससे बनने वाली बिजली गाँव की स्ट्रीटलाइट्स और दूसरी जरूरतों में उपयोग हो रही है
इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है वो पैसा विकास के दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है
अब मुझे बताइये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी देशवासियों को कुछ करने की प्रेरणा देती है कि नहीं देती है
कमाल ही किया है न इन्होंने
मेरे प्यारे देशवासियो
मन की बात अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है
दुनिया के अलगअलग कोने में भी मन की बात की चर्चा होती है
और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय समुदाय के लोग हैं वे भी मुझे बहुत सी नईनई जानकारियाँ देते रहते हैं
और मुझे भी कभीकभी मन की बात में विदेशों में जो अनोखे कार्यक्रम चलते है उसकी बातें आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है
आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से परिचय कराउंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ
थोड़ा गौर से सुनिएगा
रेडियो युनिटी नाईन्टी एफ्एम्2
नमोनमः सर्वेभ्यः
मम नाम गङ्गा
भवन्तः शृण्वन्तु रेडियोयुनिटीनवतिएफ्एम् एकभारतं श्रेष्ठभारतम्
अहम् एकतामूर्तेः मार्गदर्शिका एवं रेडियोयुनिटीमाध्यमे आर्जे अस्मि
अद्य संस्कृतदिनम् अस्ति
सर्वेभ्यः बहव्यः शुभकामनाः सन्ति
सरदारवल्लभभाईपटेलमहोदयः लौहपुरुषः इत्युच्यते
२०१३तमे वर्षे लौहसंग्रहस्य अभियानम् प्रारब्धम्
१३४टनपरिमितस्य लौहस्य गलनं कृतम्
झारखण्डस्य एकः कृषकः मुद्गरस्य दानं कृतवान्
भवन्तः शृण्वन्तु रेडियोयुनिटीनवतिएफ्एम् एकभारतं श्रेष्ठभारतम्
रेडियो युनिटी नाईन्टी एफ्एम्2
साथियो भाषा तो आप समझ गए होंगे
ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही हैं वो हैं आरजे गंगा
आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जॉकीज के ग्रुप की एक सदस्य हैं
उनके और भी साथी हैं जैसे आरजे नीलम आरजे गुरु और आरजे हेतल
ये सभी लोग मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं
और आपको मालूम है न ये केवड़िया वही है जहाँ दुनिया का सबसे ऊँचा स्टेच्यू हमारे देश का गौरव स्टेच्यू ओएफ यूनिटी जहाँ पर है उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूँ
और ये सब ऐसे रेडियो जॉकीज हैं जो एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं
ये गाइड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथसाथ कम्यूनिटी रेडियो इनिशिएटिव रेडियो यूनिटी 90 एफएम उसका संचालन भी करते हैं
ये आरजेएस अपने श्रोताओं से संस्कृत भाषा में बात करते हैं उन्हें संस्कृत में जानकारी उपलब्ध कराते हैं
साथियो हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है
अमृतम् संस्कृतम् मित्र सरसम् सरलम् वचः
एकता मूलकम् राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्
अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है सरल भी है
संस्कृत अपने विचारों अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है उसे मजबूत करती है
संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है
हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं
ऐसे ही एक व्यक्ति हैं श्रीमान् रटगर कोर्टेनहॉर्स्ट जो आयरलैंड में संस्कृत के जानेमाने विद्वान और शिक्षक हैं और वहाँ के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं
इधर हमारे यहाँ पूरब में भारत और थाइलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा की भी एक अहम भूमिका है
डॉ चिरापत प्रपंडविद्या और डॉ कुसुमा रक्षामणि ये दोनों थाइलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचारप्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहित्य की रचना भी की है
ऐसे ही एक प्रोफेसर है श्रीमान बोरिस जाखरिन रुसिया में मोस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ये संस्कृत पढ़ाते हैं
उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं
उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रुसी भाषा में अनुवाद भी किया है
इसी तरह सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जहाँ विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है
ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैम्प संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन भी करते हैं
साथियो हाल के दिनों में जो प्रयास हुए हैं उनसे संस्कृत को लेकर एक नई जागरूकता आई है
अब समय है कि इस दिशा में हम अपने प्रयास और बढाएं
हमारी विरासत को संजोना उसको संभालना नई पीढ़ी को देना ये हम सब का कर्तव्य है और भावी पीढ़ियों का उस पर हक भी है
अब समय है इन कामों के लिए भी सबका प्रयास ज्यादा बढ़े
साथियो अगर आप इस तरह के प्रयास में जुटे ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं ऐसी किसी जानकारी आपके पास है तो कृपया सेलिब्रेटिंगसंस्कृत के साथ सोशल मीडिया पर उनसे संबंधित जानकारी जरुर साझा करें
मेरे प्यारे देशवासियो अगले कुछ दिनों में ही विश्वकर्मा जयंती भी आने वाली है
भगवान विश्वकर्मा को हमारे यहाँ विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है
जो भी अपने कौशल्य से किसी वस्तु का निर्माण करता हैं सृजन करता है चाहे वो सिलाईकढ़ाई हो सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट ये सब भगवान विश्वकर्मा का प्रगटीकरण है
दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल और स्केल पर बल दिया है
उन्होंने स्किल को हुनर को कौशल को आस्था से जोड़कर हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा बना दिया है
हमारे वेदों ने भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किए हैं
सृष्टि की जितनी भी बड़ी रचनाएँ हैं जो भी नए और बड़े काम हुए हैं हमारे शास्त्रों में उनका श्रेय भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है
ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि संसार में जो कुछ भी डेवलपमेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के जरिए ही होता है
भगवान विश्वकर्मा की जयंती और उनकी पूजा के पीछे यही भाव है
और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है
विश्वस्य कृते यस्य कर्मव्यापारः सः विश्वकर्मा
अर्थात जो सृष्टि और निर्माण से जुड़े सभी कर्म करता है वह विश्वकर्मा है
हमारे शास्त्रों की नजर में हमारे आसपास निर्माण और सृजन में जुटे जितने भी स्किल्ड हुनरमंद लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा की विरासत हैं
इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते
आप सोचकर देखिए आपके घर में बिजली की कुछ दिक्कत आ जाए और आपका कोई इलेक्ट्रिशियन ना मिले तो क्या होगा आपके सामने कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी
हमारा जीवन ऐसे ही अनेकों स्किल्ड लोगों की वजह से चलता है
आप अपने आसपास देखिए लोहे का काम करने वाले हों मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हों लकड़ी का सामान बनाने वाले हो बिजली का काम करने वाले हों घरों में पेंट करने वाले हों सफाईकर्मी हों या फिर मोबाइललैपटॉप का रिपेयर करने वाले ये सभी साथी अपनी स्किल की वजह से ही जाने जाते हैं
आधुनिक स्वरूप में ये भी विश्वकर्मा ही हैं
लेकिन साथियों इसका एक और पहलू भी है और वो कभीकभी चिंता भी कराता है जिस देश में जहाँ की संस्कृति में परंपरा में सोच में हुनर को स्किल मैनपावर को भगवान विश्वकर्मा के साथ जोड़ दिया गया हो वहाँ स्थितियाँ कैसे बदल गई एक समय हमारे पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्र जीवन पर कौशल्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था
लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में हुनर को इस तरह का सम्मान देने वाली भावना धीरेधीरे विस्मृत हो गई
सोच कुछ ऐसी बन गई कि हुनर आधारित कार्यों को छोटा समझा जाने लगा
और अब आज देखिए पूरी दुनिया सबसे ज्यादा हुनर यानि स्किल पर ही बल दे रही है
भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी सिर्फ औपचारिकताओं से ही पूरी नहीं हुई
हमें हुनर को सम्मान देना होगा हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी
हुनरमंद होने का गर्व होना चाहिए
जब हम कुछ ना कुछ नया करें कुछ इनोवेट करें कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो लोगों का जीवन आसान बने तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी
आज दुनिया में स्किल्ड लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है
प्रगति के कितने सारे रास्ते आज स्किल्स से तैयार हो रहे हैं
तो आइये इस बार हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा पर आस्था के साथसाथ उनके संदेश को भी अपनाने का संकल्प करें
हमारी पूजा का भाव यही होना चाहिए कि हम स्किल के महत्व को समझेंगे और स्किल्ड लोगों को चाहे वो कोई भी काम करता हो उन्हें पूरा सम्मान भी देंगे
मेरे प्यारे देशवासियो ये समय आजादी के 75वें साल का है
इस साल तो हमें हर दिन नए संकल्प लेने हैं नया सोचना है और कुछ नया करने का अपना जज्बा बढ़ाना है
हमारा भारत जब आजादी के सौ साल पूरे करेगा तब हमारे ये संकल्प ही उसकी सफलता की बुनियाद में नज़र आएंगे
इसलिए हमें ये मौका जाने नहीं देना है
हमें इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है
और इन प्रयासों के बीच हमें एक बात और याद रखनी है
दवाई भी कड़ाई भी
देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की दोसे दी जा चुकी है लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है सतर्कता रखनी है
और हाँ हमेशा की तरह जब भी आप कुछ नया करें नया सोचें तो उसमें मुझे भी जरूर शामिल करिएगा
मुझे आपके पत्र और मेसेजेज का इंतज़ार रहेगा
इसी कामना के साथ आप सभी को आने वाले पर्वों की एक बार फिर ढेरों बधाइयाँ
बहुतबहुत धन्यवाद